उम मैदान दिख रहा है। मैदान मे घर बनाने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं।

पाँच लोग चेयर पर बैठे हुए है और उनके सामने टेबल रखा हुआ है टेबल में वाइट कपड़ा ढका हुआ है।

मछली की शॉप दिखाई दे रही है। बहुत सारी मछली कतरो में रखी हुई है। उस दुकान पर तीन लोग बैठे हैं एक ने ब्लैक टी-शर्ट पहना है एक ने चॉकलेटी कलर की।

एक ने चेक में पहना है और वह मछली को बेच रहे हैं। माक्स भी लगाए हैं तीनों ने। एक ने रेड एक ने सफ़ेद एक महरून कलर का और भी लोग देख --

और वो कुछ बोल रहे हैं एक आदमी खड़ा हैं उसने डायरी पे देख कर कुछ --

बॉटरफॉल दिख रहा है। बॉटरफॉल में फिसल पट्टी दिख रही है और ऑरेंज और स्काइ ब्लू कलर की है और ग्रे --

नदी दिख रही है। नदी में पानी दिख रहा है और नदी में एक नाव है। नाव में बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

ब्लैक और ब्राउन कलर के व्हाइट कलर के पैंट पहने हुए हैं जूते मोजे पहने हुए हैं।

और एक कटोरे में पानी रखा हुआ है। तीन चार लाईट ऊपर जल रहे है एक ब्लैक कलर की शर्ट पहना टी शर्ट पहना हुआ लड़का दोनो हाथ सामने किया --